एक चित्र मा हम त एक मंदिर दिखेणु लग्युं जू दिखेण से केदारनाथ धाम छ लगण लग्युं।

जखा भैर हम त कुछ लोग दिखेण लग्यां कुछ पोल दिखेण लग्यां। पिछाड़ी पर हम त बड़ा बड़ा पहाड़ दिखेण लग्याँ।

यह चित्र मा हमथे एक इमारत दिखेण लगीं जैका एैंच इक बडू बोर्ड लग्युं जैफर सपेद नीलू अर हर्युं रंग हुंयु।

भैर बिटि दिवाली पर एक बड़ु चित्र बण्युं जै पर बार्बर शॉप छ लिख्युं भितर हम ते एक नौनियाल दिखेण लग्युं जु टकलू छे वफणा कुछ डब्बा भी रख्यां छ दिखेण लग्यां।

पिछाड़ी बिटि हम त बड़ा बड़ा पहाड़ छ दिखेण लग्यां जंगल दिखेण लग्युं बड़ा बड़ा डाला दिखेण लग्यां। पार बिटि भी हम त एक तपर दिखेण लग्युं जगदी रेत ढुंगा बड़ा बड़ा पहाड़ दिखेण लग्यां।

नीसाण हमते उंडे कुछ कूड़ा करन दिखेण लग्यां जु दिखेण सी मंदिर छन लगण लग्यां उंका ओर पोर हमते बड़ा बड़ा डाला छन दिखेण लग्यां जो बटी कुछ डाला हमते भीमल का दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम त एक दुकानि दिखेण लगीं जैका भैर बिटि एंच एक बड़ू बोर्ड लग्युं जै पर क्लासिक हेयर सलून छ लिख्युं वै पर कुछ नौनियाल की फोटो छ बणी उंडे फुंडे भी नौनियाल की फोटो छ लगीं।

निसाण हमते गाड़ दिखेण लगी जैका किराणा फणा कुछ बड़ा बड़ा ढुंगा छन पार बटी बड़ा बड़ा कूड़ान दिखेण लग्या कुछ जंगल अर बड़ू पहाड़ च दिखेण लग्यू जै तो बड़ा बड़ा डाला छन।

एंच कुछ मूर्ति दिखेण लगीं एचं फण हमते कुछ घंटीन दिखेण लगीं। ओर पोर हमते कुछ खम्बा दिखेण लग्यां। य फणा कुछ पिंग्लू रंग छ होयुं।

ये चित्र मा हमथे एक दुकानी दिखेण लगी जैका भैर दिवाली फणी हमथे कुछ नकली घास कर दिखेण लगीं भैर बटी एक कुर्सी करा लगी।

अगाड़ी फणा हम ते बड़ी बड़ी इमारतन दिखेण लगीं उंडे फुंडे बड़ा बड़ा पहाड़ अ जंगलन दिखेण लग्यां जगदा कुछ डाला भिन।